इस इमेज में यहाँ मोटर साइकिल चलते हुए दिखाई दे रही फोर लाइन रोड दिखाई दे रहा है कुछ--

यहाँ एक लड़का खड़ा दिखाई दे रहा है। इ शॉप बहोत बड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ लाइटिंगे भी लगी हुई दिखाई दे रही --

यहाँ बादल दिखाई दे रहा है यहाँ ऊपर हर डालियां पत्तियाँ लगी हुई दिखाई दे रही है यहाँ बहुत सा आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ बाइके हैं दिखाई दे रही है।